यहाँ पर सामने मे एक स्टेज बना हुआ है जिसमे एक पोस्टर लगा हुआ है और दो तीन फोटो भी दिखाई दे रही है लाइटे लगी हुई है यहाँ पर बहुत सारे खुर्सियाँ रखी हुई है जो की ब्लॅक कलर के सामने मे--

एक लेडीज़ खड़ी हुई है जिसने पीले कलर की साड़ी पेहनी हुई है।

यहा पर बहुत सारे लोग आते-जाते दिखाई दे रहे है और एक बस खड़ी हुई है नीले कलर की एक कार खड़ी है व्हाइट कलर की आ --

झंडा लगा हुआ है यहा पर से एक रेलिंग लगी हुई है और साइड मे छोटे छोटे पेड़ दिखाई दे रहे है नीचे मे छोटी छोटी घासे है बहुत सारी गड़िया दी--

यहाँ पर बहुत सारी गड़िया दिखाई दे रही है जो की रेड कलर की है एक जाली लगा हुआ हैं साइड मे।

साइड में एक पेड़ का तना दिखाई दे रहा है जिसमे पीले कलर का कपड़ा बंधा हुआ है रेलिंग लगी हुई है यहा बस एक डस्ट बिन रखा हुआ है जिसमे फूल रखे हुए है।

यहाँ पर से एक रस्ता गया हुआ है एक यहाँ पर लाइनिंग लगी हुई है।